ये एक डेयरी प्रॉडक्ट्स की शॉप है।

और दो मेज लगे हुए हैं।

और माथे पे उसके तिलक लगा है हाथ मे बॉटल पकड़ी हुई है पानी की।

जिसके ऊपर एक आदमी की मूर्ति बनाई गई--

जिनमें कुछ बोतले दरी गई--

साथ में कुछ कुर्सियां पड़ी है।

टेबल के ऊपर कुछ समान धरा गया--

सामने भी दो काले रंग की कुर्सियां पड़ी है।

उसके ऊपर लाल रंग की चद्दर बिछाई गई--

या फिर कोई ऑफिस का रूम है।

जिसमें दो बड़ी बड़ी कुर्सियां लगी हुई है।

हर एक जो है साइड पे रखा गया है।

और वेहं कुछ कागज पर अपने पेन से लिख रहा है।

बाहर एक मोटरसाइकिल खड़ा है।

सभी का साइज एंड डिस्टेंस सेम है।

दो काले रंग की कुर्सियां हैं।

जिसमें सामने एक घड़ी लगी है।

नीचे एक व्हाइट कलर का सोफा पड़ा हुआ है।

और काफी गाड़ियां जो है तेल भरवाने--

जो रास्ता है वो भी काफी खुला--

एक किसी पैलेस में स्टेज की डेकोरेशन की गई--

या फिर किसी का पर्सनल ऑफिस --

औ वो कोई सब्जी खीलारी गई है जैसे गंडे हैं या कुछ और--

कोई पैलेस में किसी की मैरिज --

और ये डिश जो है एक वाइट कलर की प्लेट में सर्व की गई--

एक का रंग ग्रे और दूसरी का रंग नीला--

यहां पर काफी सारे बैग्स रखे गए हैं।